और एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

और एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

और एक स्विच बाक्स भी दिखाई दे रहा है।

और फ्लोर भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक लाइट भी है।

और उसका साइड में एक फील्ड भी है।

और उसका साइड में एक घर भी है।

और पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

वह एक घर भी दिखाई दे रहा है।

और घर का नीचे बहुत सारा इंसान है।

और बहुत सारा अंब्रेला भी दिखाई दे रहा है।

और एक सफेद कलर का घर भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा टॉयज भी दिखाई दे रहा है।